यहां एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में सर्टिफिकेट टंगा हुआ है।

पीछे बगल में कुर्सियां भी है।

और कुर्सियां पे आदमी लोग बैठे हैं।

सामने पेड़ दिखाई दे रहा है।

इसका गेट सीसे का है और लाइट भी लगाया गया है।